यह एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी दिखाई दे रही है। और यहा--

बाइक भी दिखाई दे रही है।

यहाँ एक जगह है और यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई--

यह एक रेल है और इसका कलर नीला और सफ़ेद है और आस-पास बहुत सारी घास और--